ये स्कूटी का शोरूम है यहां पर बहो सा कलर की स्कूटी है येल्लो वाई --

बाहर एक पेड़ भी हैं बहुत सारे पेड़ हैं शो वाले और सुनसान हो रही है रोड ।

आदमी लोग औरतें लोग बच्चे बूढ़े सब यहाँ पर परचेजिंग कर रहें हैं।

यह एक रेलवे स्टेशन है। यहां पर ट्रेन जा रही है।

इसमें दो साइड से जाने का रास्ता है बहुत सारी विंडोज हैं।

दोनों तरफ फ्लावर पॉट रखे गए हैं दो फैन रखे गए हैं।

दो घर बने हुए हैं एक ऑरेंज कलर का है एक लाइट पिंक कलर का है।

यह एक शॉप है ये बहोत बड़ी शॉप है इसमें स्टेशनरी का सामान भी है।

पानी कुछ गंदा लग सा लग रहा है बीच में दो आदमी नहा रहे हैं न्यूड हैं।

यहां सब बच्चे बैठे हुए हैं व इसमें कंपटीशन चल रहा है बच्चों ने--

कूड़ा पड़ा है खूब सारी साइकिलें पड़ी हैं एक खोखा लगा है एक मूंगफली का ठेला लगा है।

बादल काले हैं ल रात हो रही है यहाँ पर कलर्ड रंगंबिरंगी लाइटें लगी हैं।